और स्टील से यहाँ से ही घिरा हुआ है और --

यहां पे पानी जमा हुआ है रोड पे यहा पे बहुत सारा बाइक लगा हुआ है एक बाइक पानी के बीच मे लगा हुआ है और एक युवक उधर से चल के आ रहे है और यहा सामने --

और इसके जाने के लिए सीढी लगा हुआ है और ऊपर से सीढ़ी से एक युवक आ रहा है हाथ मे फोन चलाते हुए आ रहा है इसके ऊपर पिलर लगे हुए है जिस के कई रेड निकले हुए है।